यहाँ बहुत सारी लाइटिंग वगेरा है पंखे है लैपटॉप वगेरा रखा है बहोत सारे पेपर्स वगेरा हैगें पूरा रूम है बेसिकली बैंक वांक के अंदर का दिया हुआ हैंगे।

ये न पूरी स्लाइड दी है इसमें न दो बच्चे इनमें जोकि मस्ती कर रहे है एक बच्चा न स्लाइड पे से फिसलता हुआ आई है और एक उधर साइड मुँह करा हुआ है।